यख मा जी भिट्टु छ दिखेणु खालु छ दिखेणु यखम कई सारा हरयां भरयां डाला कर भी छन।

यख मा जी एक टेम्पो छ दिखेणु टेम्पो पर कुछ पेटी छन दिखेणी गत्ता छन दिखेण लग्यां कट्टा छन दिखेणा।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक दुकान कर छा दिखेणी यख ये दुकान देखणम कोई कॉपी किताब वाला की छ लगण लगीं।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम तें एक बड़ु बारिकु कमरा कर छा दिखेण लग्युं।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक बड़ु बारिकु कमरा कर छ दिखेणु ये कमरा मा जी तीन से चार लोग छन दिखेण लग्यां।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम तें एक बड़ु बारिकु कमरा छ दिखेणु यु देखणम होटल कु कमरा छ लगणु।